देखो और पत्थर से बना हुआ है ये जो मंदिर है जो उत्तराखंड में स्थित है और देखो बहुत ही अच्छा मंदिर है।

ये जो डबल ब्रिज बना हुआ है इसे आप देख सकते हैंऔर ये देखो कैसा नजरिया दिख रहा है ये देखो काफी बड़ी नदी यहाँ पे जो इंसान ये बैठा है जो की फोटो निकल वा रहा है काफी अच्छी फोटो है ये देखो बैकग्राउंड ।

ये देखो ये जो हमको दुकान दिख रही है जो की ये उत्तराखंड की है ये देखो ये किराने की दुकान है जो की ये यहाँ पे स्थित है जो कहाँ है उत्तराखंड के ए तिरसी में है।

और ये देखिये ये दुकान का नेम है चिल्ड्रन बुक ये देखिये ये किराने की दुकान है जहाँ पे ये देखो कोई आया है सामान लेने के लिए आया है यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगेरा भी मिलती है।

देखिए ये जो दुकान है जो की उत्तराखंड में है जिसका नेम है पार्लर एन.जे.बी. पार्लर और ये देखो आपको दिख रहा है।

जो कि एक यहाँ एक नजर दिखरी है और देखो शाइड में भी एक फैन वगेरा की दुकान है और ये देखो यहाँ बच्चे बैठे हुए है साइकिल खरी हुई है।

ये देखो ये जो हमको दिख रहा है जो की इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट सिरमौर है जो की ये यहीं का ये इंस्टिट्यूट कहाँ का --

ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है जो की यहाँ का ये यमं ये उत्तराखंड का नजरए है ये देखो काफी बड़ा ग्राउन्ड है जहाँ पे बआई -बाइक के सट--

पार्किंग में लगीं हैं ये बाइक वागेरा पार्किंग पे लगी हैं और ये देखो ये जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए खड़े होके ये देख रहें हैं ये-क जो काफी भीड़ है।

ये ये कहीं साइड अलग से अलग बना हुआ है जो की यह यहाँ दिख रहा है वो देखो काफी यहाँ पहाड़ वगेहरा हैं।

ये देखो ये जो हम को स्टेचू दिख रहा है जो की भुधिम का स्टेचू बना हुआ है देखो वाइट कलर पत्थर से देखो ऊपर जो जुमर वगैहरा लटक रहा है काफी अच्छा है इसे आप देख सकते हैं।